ये तस्वीर में जो एक बस दिखाई दे रही है जो गोल्डेन कलर है ऑरेंज कलर का मेरे को फ्लावर से सजा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक इंसान खड़ा करके है उसने जो रेड कलर का शर्ट पहना है और ब्लैक कलर का पेंट पहना है।

यह तस्वीर में जो एक कमरा दिखाई दे रहा है वहां में जो सोफा लोग रखा हुआ दिखाई दे रहा है ग्रे कलर और डार्क ब्लू कलर में।

ये तस्वीर में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स लोग घर लोग दिखाई दे रहे जो वाइट कलर में है।

ये तस्वीर में जो एक ओपेन एरिया दिखाई दे रहा है जो कि ब्राउन है यहां में जो बच्चा लोग जो इस सर्कल में जो जंप करके खेल रहे।